और एक नर्स भी खड़ी है वहाँ पर--

एक ग्राउन्ड है वहां पे गत्ते लगे हुए हैं खम्बा है एक छोटा सा घर है।

स्कूल में बहुत सारे बच्चे आना-जाना कर रहे एक लड़का साइकल से स्कूल जा रहा है ए सामने रोड है।

वहां पे नारियल के बहुत बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं यहाँ।

ये एक दुकान की फोटो है यहां पे बहुत सारे डब्बे रहे हैं एक डब्बे में सोन पापड़ी दाल--

लड्डू वहां पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार के चीजे रखी हुई है वहां।

ये एक पहाड़ की फोटो है यहाँ पे एक लड़का लड़की बैठे हैं अपनी फोटो खिचवा रहे है।

वहां पर ब्लैक कलर का प्लाइवुड और ग्लास से दिवालें बनाई गई है।

दो तीन लोग वहां आजू बाजू में खड़े होके देख रहे हैं।

अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ गुब्बारों से सजाया हुआ भी है।

जीन्स टी शर्ट रखी गई है।

और ग्रीन कलर की रखी हुई है वहां पर लाइटिस भी लगायी गयी है।

और उसने कृष्णा जी रूप धारण किया हुआ हैं पीछे।